कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं और एक ट्रैफिक लाइट लगी दिख रही है आसमान का कलर सफेद दिख रहा है।

यह दृश्य एक बीच का लग रहा है जहां बहोत सा पानी बहता हुआ दिख रहा है।

तथा आस पास बहुत ही हरी भरी घास और पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

मकान में एक ए_सी लगी हुई दिख रही है मकान के आसपास पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

ये दृश्य एक होटल का लगा रहा है जहां बहोत से व्यक्ति खाना खा रहे हैं और बहोत से बर्तन रखे हुए दिख रहे हैं होटल में--